ब्लू कलर का कपडा बांधकर दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक बुक का शॉप दिखाई दिया और बाजु में श्री राजा बुक शॉप भी दिखाई दे रहा है और बोहोत सारे बुक भी दिखाई दे रही है और बोहोत --

रूम में एक सोफा भी दिखाई दे रहा है और एक टेबल दिखाई दे रहा है टेबल पर कुछ आइटम्स मेहंदी कोन फोन पे का स्कैनर रखा हुआ दिखाई दे रहा है और येलो कलर के फ्लावर्स दिख --

इस चित्र मे एक फोटो दिखाई दे रहा है उस स्टैचू के रूप मे और बाजू में दो छोटे-छोटे खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं और पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और बाजू में एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक बच्चा और एक आँटी खड़ी हुई दिखाई दे रही है आस पास पूरा पहाड़ है और बीच में पेड़ पौधे भी है।

पूरा ओपन प्लेस में कर रहे हैं और कंफर्ट वॉल ब्लू कलर में दिख रहा है और आस-पास पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक होटल का रूम दिखाई दे रहा हैं और बहुत सारे जूसस दिखाई दे रहे हैं।